यह एक टावर है जिससे हम अपने मोबाइल में सिंगल प्राप्त करते हैं और यह बोहोत दूर की रेंज तक सिग्नल को भेजता जिसमे मोबाईल से हम एक जगह से दूसरी जगह तक बात करते हैं।

यहां पर बिल्डिंग के आगे एक हाइवे है जहाँ पर एक बाइक सवार जा रहा हे और --

इसलिए डैम से पानी को कंट्रोल किया जाता है और ये पानी को स्टोर भी करते हैं।

यहाँ कंपनियाँ कई सारी स्टॉल लगाती हैं और कम से कम दामों में लोगों को अपनी कंपनी की लाइट बल्फ या हैलोजन को बेचती हैं।

लोगों को खाना को छोड़ना नहीं चाहिए क्यूंकी अन्य बहुत ही कीमती है।

जहाँ पर कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक के सामान हमें मिलते हैं।

यहा इमेज एक कैंटीन के सामने की हैं।

यह एक बस स्टैंड का फोटो है जहाँ पर कई सारी बसें खड़ी हैं।